भारतीय कलाकृति बहोत ही सुंदर होती है धन्यवाद।

प्रस्तुतीकरण दे रही है रंगमंच बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।

थोक विक्रेता मिलते हैं तथा यहां पे लकड़ियों का समान बनाया जाता है।

कुछ शोकर्स है तथा कुछ पीले कलर की बॉटल रखी हुई है ज़ेबरा कलर की एक मैट रखी हुई है जो कि --

यह नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है धन्यवाद।

इस चित्र में हमें एक शो रुम नजर आ रहा है इस शो रुम में कई--

नीले गुलाबी पीले कलर के यह एक प्ले हॉल है।

यहां पर हमें बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे है दुकान को ऑरेंज तथा सफेद गुब्बारों से सजाया हुआ है।

खम्भे नजर आ रहे हैं यहां का गेट खुला हुआ है धन्यवाद।